यहाँ पर बहुत ही बड़े-बड़े घर है जो बहुत ही अच्छे दिख रहे है यह घर बहुत ही पुराने से लग रहे है